जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं यहां पर टी.वी.एस. का सोरूम है यहां पे बगल में ढेर सारे एम्प्लोयी जो वहां काम करते है वो खड़े हुए हैं ब्लू कलर की शर्ट पहन के --

जैसा की हम फोटो में देख रहे हैं एक इन्सान खड़ा हुआ है जोकि किसी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है और इसके हाथ में किताब है।

का उस खम्बें के पीछे बॉउंड्री बनी हुई है उस बॉउंड्री में ढेर दो -तीन पेड़ लगे हुए है बॉउंड्री के आगे और बॉउंड्री के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिग है जो की कमर्सिअल टाइप्स बिल्डिंग है वाइट कलर की।

जोकि धोती कुरता पहने हुए है और उनके उप-उपर एक माला लगी हुई है और उस स्टेचू का जो चबूतरा है उस चबूतरे के नीचे ब्लैक कलर में उनके बारे में लिखा हुआ है।

यह एवस फोटो को देख सकते है यह पे एक गेट बना हुआ है जोकि ब्लू कलर का है ब्लू कलर के गेट के बगल में रेड कलर का खंबा है उसमे एक बगल में एक बॉउंड्री बनी हुई है ।

यहाँ पे तीन -चार बाइक्स खड़ी हुई है और यहाँ पर एक रिद्धि - सिद्धि का पोस्टर भी लगा हु--

हम इस फोटो में देख रहे है यहा पर ढ़ेर सारी साइकिल है कुछ रेड कलर की है ग्रीन कलर की है ।

की हम इस फोटो में देख रहे है ये एक पिकलू स्पोर्ट्स की शॉप है इस दुकान में अ तीन चार सैंडो टंगी है जो की ब्लू कलर ग्रीन कलर रेड कलर की ऑरेंज कलर की टी शर्ट टंगी है एक हाफ पैंट हॉर्न का लोअर टंगा हुआ है।

जैसे की हम इस फोटो में देख रहे है यह रात का नजारा है यहा पे एक कह सकते है की एक बड़ा-सा चबु- छोटा-सा चबूतरा है जिसके पीछे एक बड़ा-सा --

की हमें देख सकते है एक बिल्डिग है जोकि आयकर भवन है और इस भवन में --

जैसा की हम इस फोटो में देख सकते है यहां पे एक रेड कलर का ग्राउड़ मतलब सरफेस है वहां से जाके हमें एक ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है उस गेट के पीछे एक बिल्डिग है।

हम इस फोटो को देख सकते है एक सरफेस है जिसमे छोटी-छोटी घास लगी हुई है यहा पे एक ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है बाउड्री पे --

जैसा की हम इस फोटो देख सकते है यह एक मंदिर बना हुआ है जोकि वाइट कलर के मार्बल के चबूतरे के ऊपर एक भगवान बैठाए गए है।

इस फोटो में देख सकते है यह गुप्ता ड्राई फ्रूट्स एवं अयसक्रीम पार्लर है जोकि दुकान के ऊपर लिखा हुआ है यहा पर हर चीज दिख रही है दुकान के जस--